बैंक का नाम ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स है जोकि हरे बोर्ड पे लिखा है।

एक लोहे की कुर्सी दिखाई दे रही है जो के फूटपातो पे लगी हुई होती है।

और ये कॉलम लोहे की रॉडों के हैं।